डब्ल्यू_सी की दुकान है और एक वाटर कूलर लगा हुआ है और जिसमें वाटर का बक्सा --

एक पानी की टंकी दिखाई दे रही है एक गाड़ी दिखाई दे रही है एक बिल्डिंग का काम चल रहा है एक --

और एक सामने गेट अ दिख रहा है उसमें पर गणतंत्र द्वारा नाम लिखा हुआ है कुछ झंडे की फोटो लगाई हुई है।

एक दुकान है उसमें बहुत सारे बच्चों के खिलौने दिखाई दे रहे है कुछ राखियां दिखाई दे रही है।

लेडिस भी है पर्दे पर फोटील फोटो लगी हुई है और पीले कलर का पिलर आगे दिखाई दे रहा है और दुकानदार उनसे--

अंडरवियर और बनियान मिल रही है कुछ टी-सल्ट भी मिल रही है एक व्यक्ति की फोटो --

एक लड़की की फोटो है उसमें टी शर्ट पहनी हुई है और सारी डब्बियों में अलग अलग यह --

अलग अलग दो तीन जगह कचरा पात्र रखे हुए हैं और रेल के ऊपर से जाने के लिए कुछ बना हुआ दिख रहा है और कुछ मकान भी दिख रहे हैं।

एक पास निकलता एक दुकान है दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है उसपे लिखा हुआ है।

चार पांच व्यक्ति खड़े हुए जो होली खेलते सिर्फ नजर आ रहे हैं उनके कपड़े --

अलग अलग प्रकार की स्कूटी है येलो कलर की स्कूटी है एक ब्लू कलर की स्कूटी है एक रेड कलर की स्कूटी है और --

छत पे लाइट भी है और स्कूटी नई नई सी दिख रही है।

दिखाई दे रही है उस दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और आगे एक बाइक खड़ी हुई है और दुकान में कुछ --

दीवार पर कुछ टैटू चिपका रहे हैं उसमें कुछ देख रहे हैं कुछ लोग उसके अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं और व्यक्ति --

वो गुब्बरो से बहोत अच्छा शानदार डेकोरेट किया हुआ है।

ये डिप्लोमा हॉस्पिटल है इसमें एक महिला--